यहाँ पे घर है बहुत-सारा लाइट भी लगा गया है बहुत खूबसूरत घर है।

और सारंगी है लाल कलर हरदिल का कलर का ब्लू कलर का है | उधर लाल कलर की भी है | ढोल भी है लाल कलर का बोहोत बढ़िए लग रहा है देखने में बहुत खूबसूरत भी है बोहोत बढ़िया--

यह एक पहाड़ का झरना है | चार आदमी है तीन आदमी उधर खड़ा है एक आदमी इधर पत्थर पर बैठकर सेल्फी खिंचवा रहा है | बहुत खूबसूरत लग रहा है यह झरना देखने में | पहाड़ी इलाका है यह |

मोटर लगा है इधर बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में बहुत खूबसूरत भी है उधर लेन का बोर्ड है बहुत खूबसूरत भी लग रहा है देखने मैं ये नजारा बहुत बढ़िया--

यहां पर लगता है पेट्रोल पंप है | एक भाई साहब जा रहा है पेट्रोल भरवाने | बहुत बढ़िया पेट्रोल पंप है | बहुत लंबा भी है देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है | हरियाली हरियाली सब जगह है |

बढ़िया पेट्रोल पंप है यहां पे बहुत खूबसूरत भी है बहुत बढ़िया लग रहा है देखने मे ---

लगता हैं घर है बहुत बढ़िया से घर बनाया है | बहुत खूबसूरत लगता है देखने मे | इधर बिजली का खंबा है थोड़ा लिबा हैं | बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में | इधर हारा भरा पेड़ है सब जगह हरा भरा है।

लगता है पहाड़ी इलाका है इधर एक बहुत बढका पहाड़ है इधर लगता है खजूर का गाच्छ है ये बहुत बढ़िया लग रहा है देखने मै उधर लगता है एक आदमी है की कुत्ता-वुत्ता है।

कपडा पहन के उजाला वाला बोहोत बढ़िया लग रहा हैं देखने मैं उधर बैग भी रखा हैं बोहोत बढ़िया दिखने मैं लग रहा हैं।

इधर बहुत बढ़िया लग रहा है टैम्पू वैम्पू बहुत सारा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में वाइट कलर का एक कार है टैम्पू है करिया और लाल का---

इधर बाइक है उधर दो आदमी है खुर्सी भी बहुत है देखने मे बहुत खूबसूरत लग रहा है बहुत बढ़िया इधर चीज भी है लगता है होटल है ये-- ।

--लगता है जे_सी_बी से खुदाई हो रहा है और दो तीन आदमी देख रहा हैं निचे क्या है बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में और ज सी बी से खुनाई हो रहा है बहुत गहरा खूना है ।

बहुत सारा आदमी है लगता हैं हजार दो हजार आदमी है इतना आदमी कहा से आया है लगता हैं सब्जी खरीदने आया है सब्जी खरीदेगा बहुत सारा सब्जी ले लेगा --

बहुत बढ़िया देखने में लग रहा है पेपर रसगुल्ला बहुत बढ़िया-बढ़िया रसगुल्ला है देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है खूबसूरत भी है खाने में भी बहुत बढ़िया---